और दो पेड़ है एक इधर एक उधर। पेड़ भी बोहोत बड़ा विशाल लग रहा और जब हम धान बोया हुया आप देख सकते हैं।

जो कि पेपर से कुछ बना रहे हैं स्कूल का प्रोजेक्ट --

और ये देख सकते हैं। बोहोत सारे बच्चे हैं जो कि सारे टेबल पे रख-रख के सारा कुछ बना रहे हैं।

और भी आप ध्यान से देख सकते हैं अंदर कुछ लोग बाइक खरीद भी रहे हैं।

और आप देख सकते है। बहुत दूर तक यह नदी गई है और साइड साइड में कुछ घर भी बने हुए हैं जोकि आपको दिखाई दे रहे होंगे।

यह आप देख रहे हैं गांव का मेला है जोकि झूला है ये देखिए जिसमें बाल-बत्ती वगैरा लगा हुआ है।

देखने में अच्छा लग रहा है जिसके अ देखके बाहर में बड़ा सा पेड़ भी है।

हाँ आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे लाल स्वेटर पहने हैं। माउस लगाये हुए हैं।

देख सकते हैं। ये किताब का दुकान है। यहां होल सेलर से सारा किताब मिलेगा।

पानी बहुत जमा हुआ है। साइड - साइड देख रहे होंगे कार भी है। स्कूटर मोह मोटरगाड़ी भी है।

जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये एक बिजली का जो है तार गया हुआ है इधर उधर।

और उसपे भी गोल गोल घूम के वो बच्चे स्लाईड कर सकते --

देखो स्टॉल पर क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं चाय स्पेशल --